महात्मा गाँधी हाथी में लाठी लिए हुए है।

खाली जगह पर बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें सामने पिंक कलर की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।